यहाँ पर रेल की पटली दिखाई दे रही हैं | यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है।

पर एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के बाहर कुछ बोरियाँ खाली र डली हुई हैं जो दिखाई दे रही हैं एक गाड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर लाइट लगी हुई है जो दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर के ऊपर गुम्बट बनी हुई हैं जो दिखाई दे रही हैं। मंदिर में घंटी लगी हुई हैं गेट लगा हुआ है जो दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ हरियाली लगी हुई है जो दिखाई दे रही है । कुछ पेड़ लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है । यहाँ पर ईंट डली हुई है जो दिखाई दे रही है।

पर एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर कुछ कार खड़ी हुईं हैं जो दिखाई दे रहीं हैं कुछ व्यक --

ती खड़े हुए हैं जो दिखाई दे रहें हैं एक आटू दिखाई दे रहा है यहां पर एक --

यहां पर एक मंदिर बना हुआ है मंदिर मंदिर के बाहर एक नल लगा हुआ है जो दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जो दिखाई दे रहा हैबाहर कुछ जानवर अ कुत्ते बैठे हुए है जो दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के ऊपर कुछ माइक लगे हुए है जो दिख रहे है झंडे लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे है पेड़ दिखाई दे रहे हैं |

यहाँ पर तीन व्यक्ति खड़े हैं जो दिखाई दे रहे हैं। एक टेबल लगी हुई हैजो दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक दीवार के पीछे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक कार खड़ी है जो दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक दीवार ब बनी हुई है जो दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ पर ए एक व्य दो तीन व्यक्ति खड़े हुए है जो दिखाई दे रहे है।